जहां पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें देवभूमि--

जिसमें बहोत से स्नेक्स दिखाई दे रहे--

बहुत सी भगवान की मूर्तियां दिखाई--

है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ स्पॉटलाइट --

यहां एक मूर्ति दिखाई दे रही हैं जिसके चेहरे पर--

और नीला आसमान दिखाई दे रहा--

सूट रखे हुएं दिखाई दे रहें--

यहां पर कुछ भगवान की मूर्तियां दिखाई--

इनकी चेहरे पर ब्लर दिखाई दे रहा है।

दुकान में लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

है यहां पर कुछ जूते रखे हुए दिखाई--

जिस पर फूलों की माला दिखाई दे रही है।

जो रंग बिरंगी दिखाई दे रही।

कुटीयों की दुकान दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक जिम सेंटर दिखाई दे रहा है।

कुछ लोगो के परछाई दिखाई--

लोग बाइबल पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।